यहाॅं आपको पोस्टर वगेरा भी दिख रहे हैं कुछ लोग भी खड़े हुये हैं एंड आप देख सकते हैं आपको बेग भी दिख रहा होगा पानी कोलड्रिंक रखा हुआ है एंड आप देख सकते हैं बोहोत बड़े बड़े पेड़ भी दिख रहे --